यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ उसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है उसके बहार कुछ वुडेन की डिजाइन भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है ।

एक हॉस्पिटल का फीमेल जनरल वार्ड है यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और यहाँ पर टाइल्स का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो विंडोज़ लगी हुई है और बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है ।

यहाँ दो पेड़ दिखायी दे रहे है. पेड़ के ऊपर बच्चा खड़ा हुआ दिखायी दे रहा है यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखायी दे रहे है जिसमें पत्ते नहीं लगी हुई है।

यहाँ एक कैफे की तरह दिखायी दे रहा है यहाँ पर कुछ स्टूडंट्स लोग बैठे हुए है यहाँ पर लुक बहोत ही शानदार आ रहा है यहाँ पे लाइट भी अच्छी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक लेडीज़ कपड़ो का शोरूम दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारी ड्रेस दिखाई दे रही है ।

यहाँ क्लास चल रही है बच्चे यहा पर बैठकर ड्रोइंग बना रहे है यहाँ पर मेम खड़ी हुई है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है।

और यहाँ एक आइडिया का ऑफिस है।